बगल में घर भी नजर आ रहे हैं जिसमें बिजली का खंभा लगा हुआ है।

आसपास बहुत ही सारा घर द्वार भी है गाज ब्रिज भी है फूल का गाच है।

देख भाल करते हैं सामने एक गेट दिख रहा है आसपास पेड पौधे हैं।

रात के टाइम का ये फोटो --

और गद्दे वगैरह भी बेचा जाता--

इसको काफी बढ़िया तरीका से सजाया गया है।

बालू भी गिरा हुआ है गिट्टी गिरा हुआ है ईंटा गिरा हुआ --

वो आदमी कुर्सी में बैठा हुआ है।

बाहर म गाड़ी भी लगी हुई है।

उसपे सारा रोड के किनारे कचड़ा भी है।

इसके टेम्पू के अंदर एक दो आदमी है टेम्पू के बाहर भी दो चार जन खड़े हैं।

नाम है इस दुकान का यहां पे बहुते बड़का बड़का पोस्टर लगा हुआ है।

यहां पे बहोत सारे गाड़ी खड़ी की गई है।

नाव पर दुगो आदमी बैठा है।